दीवाल पर कुछ बोर्ड दिख रहे हैं नी--

यहां एक स्टेज दिख रहा है जिसमें नीचे हरी--

चबूतरा बना है जिसके ऊपर एक गोल्डन कलर का गुलाब का कमल का फुल बना है जिसके ऊपर एक मूर्ति --

एक लड़की है आदमी के एक पेल काले कलर का बैग टांगें हुए हैं।

यहाँ एक टीनों का छोटा हॉल दिख रहा है जिसमे नीचे--

और कोई सफेद कलर की है और सामने एक बेंच पर महिला दिख रही--

बना हुआ है और बहुत सी एक सड़क पट्टी दिख रही है और पीछे एक दूर--

बेंच बनी हुई है और सामने कुछ झूले दिख रहे हैं और बहुत सारे पेड़--

दिखाई दे रहे है साइड में एक सफेद कलर का घर दिख रहा है ऊपर नीला--

कथाई कलर की है और पीछे ये भी ग्रीन कलर की कुछ बेंच दिख रही है और चारो तलफ --

यहाँ एक छोटा पानी का तलब दिख रहा है जिसका पानी ग्रीन दिखाई दे रहा है जिसमे पेढ़े की छाव --

दो कछुवे और दिख रहे है किनारे पर और बहुत सारे सिक्के --

यहां एक बाहर का होल दिख रहा है जिसमें सामने दीवाल है जिसको--

क्रीम कलर की है और निचे बोहोत सारे लाइन से काले कलर के गमले रखे हुए है और सामने बिल्डिंग है जो --

यहां एक शोरूम दिख रहा है जिसमें ऊपर नीली पट्टी है और बाहर कांच की।

खिड़कियां बनी हैं ऊपर टाटा मोटर्स और एक साइड यामाहा लिखा हुआ है नीचे बहोत सारी कारे --

खड़ी हुई है काले सफेद और एक नीले कलर की है और अंदर एक का--

पहने हुए हैं सर पर काली और सफेद टोपी है जिस पर सफेद कलर से बॉय--

पेड़ लगे हुए है जिनपे रेल लोहे की जाली लगी हुई है उनकी पर्दों की नीले --

दिख रही है और साइड मे एक आधा पोस्टर दिख रहा है ऊपर सफेद र --

यहां एक आदमी देख रहा है जो ग्रीन कलर की कोटि पहने हैं सपोर्ट सफेद।

यहाँ एक बैंक दिख रही है जिसमे ऊपर चार ए_सी के पंखे --

यहाँ एक आदमी दिख रहा है जो सड़क पर झाड़ू--

लिखा हुआ है नीचे कांच का गेट है और जिसके ऊपर ये--

यहाँ एक दुकान दिख रही है जो लाल कलर की है जिसमे ऊपर काला--

वो आधी पिली आधी हरी दिख रही है और बहोत सी उस पर बेल लगी हुई है ऊपर दो--

यहां एक छत दिख रही है जिसमें पूरे में लोहा--

बिछा हुआ है और सामने माल डल रहा है और कुछ आदमी उसको--

यहां एक गेट दिख रहा है जो काले कलर का है लोहे का जिसकी जाली वाला--

और गोल्डन कलर की डिज़ाइन बनी हुई है दोनों साइड खम्बे है जिन पर काले पोस्टर लगे हुए है।

इसमें साइड में एक पोस्टर लगा है जिस पर चर्चिस्ट लिखा--

ई रोयल एलिफैन्ड खड़ी हुईं हैं और एक हेलमेट डला हुआ हैं।

यहाँ एक हॉल दिख रहा है जिसमें साइड में बहुत सारी बेंच लगी हुई है जिनके पीछे लडकियाँ खड़ी हैं और बेंचो पर--

यहाँ एक मंदिर दिख रहा है जिसमें ऊपर--

अः एक डार्क क्रीम कलर निचे सफ़ेद कलर है और ऊपर एक छोटी बनी हुई है जिस पर दो माए की--

सामने एक लोहे का गेट है जिसके अंदर नीले कलर का परदा --

यहाँ एक सड़क दिख रही है जिसके दोनों साइड --

यहां गोल्ड फोन गोल्ड लोन लिखा हुआ है और सामने एक चबूतरा बना है जिस--

लाल कलर की है और सरकने वाली प्लेट ऑरेंज कलर की दिख रही है और पीछे--

सीढ़ियां बनी हुई है और सामने एक आदमी खड़ा हुआ है और बहुत सारे पेड़।

कचड़े ‌की गाड़ी दिख रही है जिसके पीछे एक मोटरसाइकिल है और सामने--

बहोत सी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है साइड में एक दिवार बनी है जिसके ऊपर बड़ा सा--